बड़े बड़े पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है।

सफेद बादल भी नजर आ रहा है।

एक घर भी नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में मुझे फादर नजर आ रहे हैं।

लकड़ी का फेंसिंग भी नजर आ रहा है।

मुझे इस पिक्चर में बिल्डिंग नजर आ रहा है।

और दो घर भी नजर आ रहे।

दूर में गाड़ी भी नजर आ रहा है।

फेंसिंग भी नजर आ रही है।

इस पिक्चर में मुझे बहुत सारे इंसान नजर आ रहे हैं।

पीछे सेलो का बैकग्राउंड नजर आ रहा है।

ये पेंटिंग्स नजर आ रही है।

ब्लैक कलर की गेट खुली हुई नजर आ रहा है।

इंसान भी नजर आ रहा है जिसने काला कलर का पैंट लाल कलर के कपड़े पहने हुई है।

इस पिक्चर में मुझे सैलून नजर आ रही है।

दरवाजा भी खुला हुआ है।

और एक्सरसाइज मशीन भी नजर आ रहा है।